नीचे में केक बिस्कुट बनाने वाली मशीन भी रखा हुआ है।

वहां पे एक कार्टून है उस कार्टून में नाम भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पिकनिक स्पॉट्स है।

में बैठने के लिए एक टेबल और चेयर लगाए गए हैं टेबल पर--

कुछ लोटे रखे गए हैं।

क्लास टीचर खड़ी हैं।

यह एक जिम का इमेज है।

यहां पर बड़े बड़े ऐनक भी लगे हुए हैं।

वहां पर बहोत सारा पेड़ पौधा हरा भरा दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर आकर्षक है।

यह एक नर्सरी का इमेज है।

एक प्रतिमा है इस प्रतिमा को लकड़ी के द्वारा बनाया गया है।

एक लेडिस अपने सिर पर टोकरी में कुछ लिए हुए दिखाई दे रही है।

लोग कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारे बाइक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक महिला झाड़ू करते हुए नजर आ रही है।

बेड के ऊपर दो सफेद कलर की तकिया है और दो चादर भी रखे गए हैं।

बहुत सारे लोग कैंडल जलते हुए नजर आ रहे हैं।

वहां पे आर_पी_एस हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुए नजर आ --

यहां पर बहुत सारे साउंड बॉक्स दिखाई दे रहा है और गमले के पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह एक जन सेवा केंद्र है।

यहां की दीवार पर एक पोस्टर लगा है जिसमें सारी सुविधाएं लिखी हुई हैं।

इस उद्यान के चारों ओर बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

उद्यान को चारों तरफ से दीवार से छेका गया है।

और दूर में हार्वेस्टर के छोटे छोटे घर भी नजर आ रहे हैं।

दूर-दूर तक खाली पानी ही पानी नजर आ रहे हैं।

कमरे का इमेज है यहां पर सोफा लगाया गया है बीच में टेबल रखे हुए हैं।

वहां पे इनवर्टर भी है इनवर्टर के नीचे में एक चप्पल दिखाई दे रहा है।

यह एक कॉफी शॉप है यहां प टेबल चेयर बनाए हुए हैं।

एक इंस्टीट्यूट का इमेज है यहां पर डस्क टेबल लगाए हुए हैं डक्स पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

डाइनिंग टेबल बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है।